पर्दे डाले हुए हैं गाडी की उसके गा के पास पेड़ लगा हुआ है जो उसकी डाली हाथ के लिए टक रहा ह।

कलर्स डायरी बी पायल और अलमारी में काफी सारी कि किताबें रखी हुवेंगे यहां पर एक आदमी खड़ा है और दो आदमी खरीद रहा है समा--

खाफी सारे पेड़ पौधे और कुछ लोग लिए हुवे होंगे तसला जिससे अब घर के पूरा बना रहे होंगे।

यहाँ पर घर बन रहेगा हम्म यहाँ पर नीचे के तरफ बाश लगी हुई है जो ऊपर के पोर्सन को--